यह गांव के अंदर की तस्वीर नहीं है गांव के बाहर बहोत ज्यादा अच्छी तरीके से रखा गया है।

यह एक एस_बी_आई बैंक का ए_टी_एम है ए_टी_एम बहुत ही छोटा है तथा ए_टी_एम के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है ए_टी_एम के बाहर--

में बहुत ज्यादा वाई रॉड लगे हुए हैं।

रेस्ट्रों में बहोत ज्यादा सीटें लगी हुई है यहां बहोत ही अच्छा प्लेस है डेकोरेट तो --

बहोत ही साधारण तरीके से सजाया हुआ है यहां डॉक्टर की चेयर भी रखी हुई है तथा बी_पी की मशीन रखी गई है यहां पर --

झोपड़ पट्टी बनी हुई है यहां पर कुछ बोया हुआ है तथा यह खेत लग रहा है जिसमें फल या सब्जियां कुछ बोई गई है।

में कई प्रकार की रोटियां बनाई जा सकती हैं।

जो समय की बचत कर सकती है यह मशीन बहुत ही महंगी आती है इसमें आटा भी गूंथा जाता है रोटियां भी बनाई जाती है तथा रोटियां सिख भी जाती है।

यहां सिर्फ एक टैक्सी चल रही है पीछे बहुत ज्यादा हरियाली है।

जो भी बहुत सुंदर है वॉटरफॉल के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा हरियाली है पेड़ है पौधे हैं अन्य कई चीज है।

एक टेंट में जा रहें हैं यहाँ टेंट के अंदर क्या हैं वो क्लियर नहीं दिख रहा पर भीड़ से लगा रहा है कुछ अच्छा या रोमांचित --

बाहर बहोत ही ज्यादा हरियाली है कार्स भी खड़ी हुई है।

दो फ्लोर की स्कूल है स्कूल बहोत ही क्लासी लग रही है बहोत ही साफ सुथरी स्कूल है।

यह फोटो एक हॉस्पिटल की फोटो है जहां डॉक्टर्स नर्सेज अपनी यूनिफॉर्म में खड़े फोटो खिंचवा रहे हैं।